यहां पर लाल जमीन भी दिख रही है।

ये एक क्रीम कलर की बिल्डिंग है।

उस झूले पे लड़की बैठी हुई है।

और यहां पर बहुत सारे पेड़ भी दिख रहे हैं और लोग भी दिख रहे हैं।

और टेबल पर बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है।

लाल सफेद कलर का पुता हुआ है।

उस पे होंडा का बोर्ड लगा हुआ है।

नीला और पीला आसमान हो रहा है।

और यहां पे सामने उसके आगे दस पंद्रह लोग खडे हुए है।

और एक आदमी के हाथ में लाल कलर की थैली भी है।

और यहां दो ऑफिस भी हैं।

और गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं।

बहुत सारी दवाइयां है।

पेड़ लगे हैं और एक--

यहां पर एक लकड़ी का--

पेड़ भी लगे हुए हैं और टेबल कुर्सियां भी रखी हुई हैं।

पीले और लाल कलर की--

खंभा भी लगा हुआ है।

सामुदायिक भवन लिखा है।

आदमी भी बैठा हुआ है।

राजा भोज भी खड़ा है और नीली जालियें भी लगी हुई हैं।

यहां एक हाथी खड़ा हुआ है।

विश्व विद्यालय उसके आगे एक झंडा भी लगा हुआ है और--

पेड़ पौधे ही बीच में नदी है पानी की।

पीछे लड़के भी खड़े हैं।